कई तारों का गुच्छा लटका हुआ है।

ये एक एरिये की तस्वीर है जिसमें वर्कर जमीन पर--

और एक साइड पर उसके फोम की पेटी बनी हुई है।

इन दुकानों के ऊपर कई मंज़िले रिहायशी हैं।